सामने कुछ मजदूर काम कर रहें हैं तीन लोंग हैं नीचे कुछ ईटे हैं लोहे के सरिये का गिल ग्रिल बना रहें हैं।

सामने एक है एम.बी.आर. फिश सेण्टर है उसपे कई --

सामने कुछ ग्रिल दिखाई दे रही है जो की सिल्वर कलर में है।

गेट बना हुआ है काच का है बडा सा गेट बना हुआ है जिसपे वेल्कम लिखा हुआ है।

बगल में सेटल्ड हैं नीचे कालीन बिछाई हुई है जो कि काफी अच्छी लग रही है।

लायटिंग लगी हुई है ऊपर आपको नीचे टाईलस लगी हुई है ऊपर रेड कलर में साउंड लगे हुए हैं लायटिंग बड़ी-बड़ी लगी हुई हैं।

बिल्डिंगे लगी हुई है तारे लगी हुई है पिछे कही प्रकार की पेड़-पौधे हैं जिसमें कई प्रकार के फूल हैं लाल पीले और हरे।

सड़क के बगल में एक सफ़ेद कलर की लकड़ी लगाई गई है जो देखने में काफी अच्छी लग रही है।

और यहाँ पे याप कारे नजर आ रही है।